रूम के अंदर एक वुडन टेबल और चेयर रखा हुआ है।

बेड भी दिख रहा है जिसमें रेड कलर का बेडशीट बिछा हुआ है।

इस तस्वीर में एक मंदिर जैसा दिख रहा है जो एक गांव की छोटी जगह पर बना हुआ है।

लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर के बॉक्सेस रखे हुए हैं।

दुकान के दोनों तरफ पानी के बड़े कंटेनर्स भी नजर आ रहे हैं अंदर ग्रॉसरी के आइटम शेलवस पर सफाई से लगा हुआ दिख रहा है।

घर के ऊपर वॉटर टैंक और छत पर कुछ चीजे रखी हुई है बैकग्राउंड में नारियल का पेड़ और हरे भरे विकृस दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें दो लड़के लेफ्ट साइड में एक छोटी दीवार पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

फाउंटेन के पास हमें एक स्कालपोरेट मूर्ति भी दिखाई दे रही है।

लड़के ने अपने दोनों हाथों को फैला कर रखा है।

पीछे का वातावरण देखकर ऐसा लगता है कि ये एक सुबह का वक्त होगा।

इस तस्वीर में हमें एक जिम का मशीन दिख रहा है जो बैक एक्सटेंशन मशीन या हाइपरटेंशन बेंच कहलाती है।

चेयर्स सफेद कलर में लिपटी हुई है और हर एक पर ऑरेंज कलर का रिबन बंधा हुआ है।

जो अंदर से काफी साफ सुथरा और स्पेशियस लग रहा है आगे स्टेज बना हुआ दिख रहा है जहां शायद कोई सेरेमनी या इवेंट होगा।

वॉल पे शेल्व्स लगी हुई है जहां अलग अलग प्रोडक्ट्स और बॉटल्स रखी गई है।

इस तस्वीर में हमें एक हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटी का दरवाजा दिख रहा है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा है बोर्ड पर लिखा है फीमेल जनरल वार्ड ।

ये वार्ड काफी सिंपल और बेसिक दी दिख रहा है।

साइड में सी_ओ_बी लिखता हुआ नजर आ रहा है।

तस्वीर में हमें एक महिला डांस करते हुए नजर आ रही है।